यह चित्र एक माल का लग रहा है।

यहां पर चार पांच लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

पीछे एक बैनर पर किरीति योगा लिखा हुआ है।

यहां पर सफेद कलर का रैक बना हुआ है।

यहां पर ढेर सारी बुक्स दिख रही हैं।

सीलिंग पर एक बड़ी सी झूमर लगी हुई है।

एक बैनर पर बालाजी लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत तरीके के कपड़े रखे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहोत सारे बुक्स रखें हुए हैं।

जिस पर पानी की जार रखी है।

लेफ्ट साइड में एक टेबल रखा हुआ है।

ऊपर की साइड में मारुति सुजुकी अरेना लिखा हुआ है।

सामने एक शेर दिख रहा है।

यहां पर लकड़ी का चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ है।

यहां पर बहोत सारे हिरण दिख रहे हैं।

यहां पर स्टील के पाइपों से रेलिंग बना हुआ है।

पीछे की साइड में एक बड़ा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है।

यहां पर ऊपर एक फ्लाईओवर जैसा भी दिख रहा है।

इस पर बहोत सारी आकृतियां बनाई गई है।

यह चित्र किसी जिम के शॉप की लग रही है।

सामने कुछ बैनर्स भी लगे हुए हैं।

पीछे कुछ ताड़ के पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने एक हौदा जैसा कुछ बना हुआ हैं।

आगे एक दो कार भी दिख रही है।

ऊपर की ओर दो झंडे भी दिख रहे हैं।

सामने दो घंटी टंगी हुई दिख रही है।

जमीन पर रेड कारपेट बिछा हुआ है।

यह चित्र एक कार गैरेज की है।

चित्र में एक टेबल दिख रहा है।